इस पिक्चर से यह पता चल रही है कि ये एक बहोत बड़ा एरिया है जिसमें--

इस पिक्चर से ये पता चलती है कि ये एक देवी मां का मन्दिर है जिसको जिसमें--

बहुत सारा इंसान खड़े है जिस जिसके लिए बहुत भीड़ है।